इस तस्वीर में दिखाई पड़ रहा है कि जेसीबी की सहायता से जमीन की खुदाई हो रही है।

इसमें एक सेर दिखाई दे रहा है जो पिंजरे के अंदर बंद है।

जहाँ पे कुर्ती और ब्लेजर टंगे हुए हैं मेंस का--

जहाँ पे दो गोरे आगे की ओर।

बहुत सारे चेयर्स लगे हुए हैं एक टेबल पे बहुत सारे प्लेट्स रखे हुए हैं।

यह तस्वीर जो दिखाई दे रही है यह रात के अंधेरे में ली गई है।

इसमें बहुत सारे हरियाली पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

यह जो तस्वीर सामने दिखाई दे रही है यह तस्वीर किसी ऑफिस का है।

और पेड़-पौधे बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रहे हैं।

ने बैनर लगा हुआ है और उस बैनर पे एक बच्चे का फोटो है।

इसका डेकोरेशन बैलून की सहायता से किया गया है और इसके ऊपर पेपर के कटिंग करके भी डेकोरेशन किया गया है।

इसमें चार पाँच लाइट्स दिख रही है जो कि काफी शानदार तरीके से जल रही है।

उसके बाजू में भी एक व्यक्ति वाइट कंजी पहने हुए खड़ा है।

यहाँ पे आईवीएफ तकनीक द्वारा बच्चा पैदा किया जाता है क्योंकि इसका बोर्ड सामने लगा हुआ है।

क्योंकि इसमें इमरजेंसी और आपातकालीन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है।

बहुत सारे लोग अंदर की ओर जा रहे हैंऔर कुछ महिलाएँ और कुछ पुरुष--

यहाँ जो तस्वीर दिखाई पड़ रही है किसी डांस क्लास या यूरो क्लास का हो सकता है।

क्योंकि बहुत सारे बच्चे सफेद रंग के--

यह तस्वीर जो दिखाई दे रही है यह तस्वीर--

डांस एंड फिटनेस स्टूडियो लिखा हुआ है वॉल पे वॉल का कलर --

वेदी कलर है और कुछ लाइट्स भी रस्सी के त से लगे हुए हैं।

डेकोरेट किया गया है इसमें कलर्स की भी फोटो है ।

इसमें एक व्यक्ति बैठकर फूलों की माला बनाने का प्रयास कर रहा है।

और उसके बगल में एक महिला भी है हालांकि दूसरे दुकान पर भी एक पुरुष बैठा हुआ है और उसके बगल वाली दुकान पर भी एक महिला है।

क्योंकि इसमें जो बहुत सारे और--

टिकट काउंटर जैसा कुछ बनाया गया है।

यह तस्वीर जो दिखाई दे रही हैकिसी शॉप का है।

यह तस्वीर किसी गमले का शॉप का है जो प्लास्टिक के गमले को सेल करता है।

इस दुकान में एक टेबल है जिस पे क्यूआर कोड बार कोड स्कैनर भी रखा हुआ है।

और इस पार्क के चारों ओर कुछ पेड़-पौधे हैंऔर कुछ घर भी हैं।

का जो गेट हैवह बैलून से सजाया गया है।

वाइट और ब्लू कलर का बैलन का यूज किया गया है।

बिकानेर स्वीट्स बहुत अच्छी मिठाइयाँ बनाती हैं।

इस दुकान में अभी भी बहुत सारे कस्टमर्स दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर जो दिखाई दे रहा है किसी रूम का है।

मे बी यह ओयो का हो क्योंकि इसमें जो बेडशीट बिछा हुआ है सफेद कलर का है।

और जो शर्टन है विंडोज के पास वो बंद है।

एक चेयर भी है और टेबल पर एक वाटर बोतल रखा हुआ है।

माता बुद्ध ध्यान मुद्रा में इसमें बैठे हुए हैं।

तस्वीर जो दिखाई दे रहा है किसी पार्क का हो सकता है जहाँ पे --

एक शेर एक शेरनी और दो सावक दिखाई दे रहे --

और पीछे बैकग्राउंड में पहाड़ है और बहुत सारे पेड़-पौधे हैं।

यह तस्वीर जो दिखाई दे रही है किसी ऑफिस का है।

इस तस्वीर में एक मशीन भी रखा हुआ है जो शायद जिम करने के काम में आता है।

मुझे यह प्रतीत हो रहा है कि यह बर्तन की दुकान की है।

किसी स्कूल या कॉलेज का हो सकता है।

इस तस्वीर के बगल में एक तालाब जैसा कुछ प्रतीत हो रहा है।

जो स्कूल है वो करकट का उस पे बना हुआ है।

इस तस्वीर में बीच में बैरकेडिंग किया हुआ है और रोड पे बहुत सारे --

वो तराजू भी अपने साथ में रखे हुए हैं और माथे पे लाल गमछी बांधे हुए हैं।

यह तस्वीर जो दिखाई दे रही है किसी कैफे का है।

अ बात कर रहा है फोन पे टेबल पे एक रिक्शा जैसा कुछ रखा हुआ है।

और बैंक के बगल में बैंक का एटीएम भी है।